बस डिपो है यहाँ पे बस लगी हुई है जो की इस बस डिपो पे यात्री जो है रात में सो रहे है और ये सफर के लिए सफर करने के लिए परेशान है।

जो की रोड की ढलाई हो रही है यहाँ पे रात मैं काम कार्य हो रहा है और यहाँ पे एक बल्ब लगी हुई है जो की काफी --

ये एक ऑफिस है ऑफिस मे एक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे टेबल पे बहोत सारे पेपर रखे हुए है जो की फाइल है और इस ऑफिस के सिस्टम के बगल मैं एक गोदरेज का छोटा सा अलमारी रखा हुआ है और ये ऑफि--

रेस्टोृरंट है यहाँ पे रेस्टोृरंट पे जो है वाइट कलर का दवाल लगा हुआ है और इसपे फोटो लगे हुए है और पास मैं जो है चेयर और टेबल लगे हुए है और यहाँ पे दो -दो पर्सन जो है बेठ कर के कुछ बाते कर रहे है।